खेत में नीचे ज़मीन पर घास फूस पड़ी है ।

फर्श पर छोटी छोटी घास लगी है।

दूर एक आदमी खड़ा अपने मोबाइल में लगा है।

छोटे छोटे से फूल भी लगे हैं।

पानी बेह कर बाहर सड़क के जाने मे जा रहा है बाहर--

दुकान के बाहर दो आदमी स्टूलों पर बैठे हैं।

एक दूसरे की जाने मुँह कर के बातें कर रहे है ।

जम के कुछ मेहमान थालियों में खाना परोस कर खा रहे है।

उसके पीछे एक बड़ा सा पुराना टी_वि लगा है ते

एक पेट्रोल पम्प पे गाड़ियों का बहुत रश है गाड़ी--

दूर एक लड़का अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए जा रहा है।

एक आदमी पौधे बैचने के लिए दुकान पर मौजूद है ।

गाँव मे लोग बेठकर तफरी कर रहे है पास आइस क्रीम की एक छोटी सी साइकिल है।